नीला आसमान दिखाई दे रहा हे एक नाव दिखाई दे रहा हे पाणी दिखाई दे रहा एक हेंगर भी दिखाई दे रहा हे वो हेंगर मिट्टी में लगा हुआ हे |

चैत्र में वाइट कलर की टाइल्स दिखाई दे रही है सभी दिखाई दे रहे हे और एयरपोर्ट दिखाए दे रहे हे |

बिल्डिंग हमे दिखाई दे रही हे और बहोत अच्छा दिखाई दे रहा हे |

यह केरला होटल व्हेज नॉन-व्हेज रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा हे एक गाड़ी दिखाई दे रही हे फर्शी दिखाई दे रहा एक डस्टबिन दिखाई दे रहा ह दिखाई देरहा हे नीला आसमान दिखाई दे रहा हे झाड़िया दिखाई दे रही हे बहोत सारे दिखाई दे रहे हे इलेक्ट्रिकल भी दिखाई दे रहा हे |

यह सराउंडिंग्स में बीच में दीवाल बन कि बीच में छोटा सा उसने पीढ़े उगाया गया है ग्रास उगाया है ये झाड़ लंबा सा झाड़ हुआ हे और ट्रैन में फिर रहा हे |

आसमान दिखाई दे रहा हे और एक रोलर भी दिखाई दे रहा हे जो इसमें सिमेंट डाले तो मिलेंगे दिखाई दे और रोड के उपर खड़ा हुआ हे और दूसरी गाड़िया उसे खिच रही हे |

पीछे पड़दा दिखाई दे रहा हे और एक लड़की पाव उठाकर पाव हाथो में से डांस कर रही हे |

जावेब दे रहे है एक कुर्सी भी दिखाई दे रही हे टेबल बी दिखाई दे रहा है आवर एक फोटो फ्रेम बी दिखाई दे रहा हे|